और मुझे यहाँ पर बड़ी दूर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं और मुझे यहाँ पर खजूर के पेड़ भी दिखाई दे रहे --

मुझे यहाँ पर एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं और मुझे यहाँ पर बिल्डिंग के भीतर बहुत सुन्दर हरी- हरी घास दिखाई दे रही--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

जहाँ पर एक मेडिकल स्टोर दिखाई दे रही है स्टोर के बाहर मुझे मोटरसाइकिले भी दिखाई दे रही हैं।